और पाउडर भी है और बाउंविटा भी है।

इस फोटो में हमें सामने की तरफ दो लोग दिख रहे हैं।

और बहोत सारे लोग है और भीड़ भी बहुत ज्यादा है।

इस फोटो में बहोत सारे फ्रूट दिख रहे हैं।

इस फोटो में भी बहोत सारे आदमी दिख रहे हैं और औरतें भी है।

इस फोटो में सामने की तरफ हमे एक छड़ की दुकान दिख रही है।

बहोत सारे केक रखे हुए हैं और ऊपर में कुछ टोपीयां जैसी हैं।

और बहोत सारी मोटरसाइकिले भी खड़ी है इसमें से एक मोटरसाइकिल के--

इस फोटो में हमे अमूल का दु शॉप दिख रहा है।

और गाड़ी के ऊपर में हेलमेट भी लगा हुआ है।

और नीचे में एक चप्पल दिख रहा है और एक बाल्टी भी है।

जो कि ये भी बहोत छोटे छोटे से है।

इसमें हमें एक रेस्टोरेंट का फोटो दिख रहा है जो कि सामने में बहुत सारी टेबल और कुर्सियां लगी हैं।

और टेबल पर नैपकिन भी रखा हुआ है।

इस फोटो में हमें बहोत सारे फूल के गुलदस्ते दिख रे हैं जो कि देखने में बहोत ज्यादा अच्छे लग रे हें।

जो की नीले कलर का बहोत बड़ा सा बना हुआ है।

इस फोटो में हमें एक टेंट बना हुआ दिख रहा है जिसमें की बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं बड़ी बड़ी सी।

और बहोत सारे लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं।

और स्कूल के अंदर साइड भी बहुत सारे खेत हैं।